इसके बाहर दो लोग खड़े हैं।

बाहर काफी डेकोरेशन की गई हैं।

लोग स्टेज के पास खड़े है।

इसके साथ ही एक छोटी सी बोट भी दिखाई--

पैलस के सामने कर्टन पर एक--

बनेरे पर बैठे अपनी--

बी_ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी --

पिछे काफी बड़े वृक्ष लगे हुए--

छोटा व्हाइट कलर का फ्लैग भी लगा हुआ है।